लोगों की बॉडी भी बनती है और बहोत ही अच्छे भी लगते हैं।

और बहोत सारी गाडी के पार्ट बदल रहे हैं और कई सारे लोग खड़े हुए है।

बैंक के द्वारे का चित्र दिखाई दे रहा है और इस बैंक के अंदर बहोत से लोग खड़े हुए है।

ये तलाब (तालाब) का चित्र दिखाई दे रहा है और ये तालाब सूख रहा है और बहोत सारे पेड़ पोधे अगल -बगल लगे हुए हैं।

और अनार भी रखा हुआ है| अगल बगल बहुत सारी मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई हैं और कुछ रिक्शे इधर से उधर निकल रहे हैं।